यख पिछाड़ी फणा कई सारा हरयां भरयां डालान हरयूं भरयूं मैदान अर रेलिंग छन यख फणी नीला रंग की अर सफ़ेद रंग की।

यख मा जी हरयूं भरयूं ढालडु करा ढालडा मा जी कुछ पुढेड़ा कर छन दिखेण लग्यां यख मा जी बड़ा बड़ा डुंगा छन रख्यां यख मा जी कई सारा हरयां भरयां डालान यख मा जी हरयूं भरयूं घास छ उगयूं।

यख मा जी एक बड़ु बारिकु हरयूं भरयूं मैदान करा यख मा जी कई सारा हिरण छन कुछ भुरेण्या हिरण छन कुछ काखड़ छन।

यख मा जी एक पीला सफेद रंग की बड़ी बारीकि ईमारत छ देखण मा जी यु क्वे चर्च छ लगण लग्युं इ पर कई सारा पोस्टर छन भेर फण लग्यां।

यख मा जी एक हरयां रंग कु गेट छ लग्युं यख मा जी यु बहोत सुन्दर कर छ लगण लग्युं यख मा जी रेलिंग छा।

यख मा जी एक खिड़की कर छ बणाई यख मा जी छोटु छोटु घास छ उगयुं यख मा जी सीढ़ी छन दिखेण लगीं यख मा जी एक सुख्यूं लाखड़ु छ हरयूं भरयूं डालू भी छ।

यख मा जी एक रोडा रोड मा जी कई सारी गाड़ी छन लगीं यख मा जी कई सारा लोग उंडा फंडा भी छन जाण लग्यां।